सही गलत का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है।

ये एडिटर के द्वारा बताया गया लाइव इं--

मनोरंजन हो जाने के बाद इनकी हवा निकाल दी जाती है क्यूंकि ये बच्चो के खेलने की वस्तू है।